यह एक स्कूल है। स्कूल बहोत ही अच्छा है।

यह एक अस्कूल है अस्कूल में अच्छा सारा --

उधर गांव है लगता है। उधर जंगल है। बगल में गांव के बगल में --

बगल में भी कुछ दुकान है।

ऑफिस में टाइल ओइल लगा हुआ हो। बिल्डिंग काफी बड़ा है --

मूर्ति के नीचे बैठेने वाला बना हुआ --

यह एक हॉस्पिटल है।

में आदमी फोटो खींच रहा है सेल्फी ले रहा है।

मतलब तबीयत वबीयत खराब होता है तो दिखा रहा --

और यह आंगनबाड़ी घर लगता है। यहाँ बच्चे के लिए कुछ बना रहा है। खिलौना खेल रहा है।